बोर्ड पे और ये बेसमेंट में है दुकान। ऊपर से आती हुई सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं।

और इस बिल्डिंग में कई सारी दुकाने वगैरा बने हुई हैं। कुछ बोर्ड लगे हुए हैं।

और एक दूसरे मन्दिर की भी गुम्बद दिखाई दे रही है आधी अधूरी।

दुकान सी दिखाई दे रही हैं उसमें प्रकाश बुक पैलेस करके लिखा हुआ है बॉर्डर पे ऊपर और सामने में --

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है सामने और उसमें उम दुकाने बनी हुई है कई सारी ऊपर भी और नीचे भी।

एक छोटी बड़ी इमारतों का बना हुआ छोटा नमूना दिखाया जा रहा है शायद ये --

उसमें भी सेंटर लगा लिखा हुआ है। कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा है इसका --

एक पेट्रोल पंप का बोर्ड लगा है बड़ा सा इंडियन ऑयल का।

कई मजदूर खड़े हुए हैं उसके आस पास। एक सीढ़ी लगी हुई है मकान पे ।

पानी भरा हुआ है और पानी में कुछ पेड़ वेड़ उगे हुएं है।

सीढियाँ दिख रही हैं नदी के किनारे की और एक खम्भा लगा हुआ है।

कुछ टेबल और कुर्सियाँ लगी हुई हैं।

आगे एक खम्बा लगा हुआ है एक उसे में कई सारी तारे जा रही हैं एक कुर्सी रखी हुई है एक कोई खड़ा हुआ है।

नदी दिख रही है बड़ी-सी।

दो बड़ी-बड़ी वाशिंग मशीन रखी हुई हैं। लॉन्ड्री की हुई वाशिंग मशीन लग रही हैं ये तीन चार --

मम्म बकेट रखी हुई है प्लास्टिक की। आ कुछ पन्नियाँ रखी हुई है पन्नियों में कुछ-कुछ सामान है।